ये एक हाल की फोटो धिकाई दे रही हैं इस हाल मे बहुत सारे फोटो टेबले लगे हुए हैं और कुछ लोग यहाँ पर धिकाई दे रहे हैं हाल की पेंटिंग वाइट कलर से कि गई हैं।

कॉलेज का फोटो है और इस कॉलेज का नाम लॉर्ड कृष्णा ग्रुप ऑफ़ है इस कॉलेज की बिल्डिंग ब्राउन ऑरेंज और ग्रे कलर से बनायीं गई है कॉलेज के बाहर एक पौधा दिखाई दे रहा है।.

ये किसी बड़े बगले का फोटो दिखाई दे रहा है और इस बगले का कलर वाइट और ब्राउन कलर से बनाया गया है एक लोहे की गेट दिखाई दे रही है औए साइड में दो छोटे-छोटे--

ये एक रेस्टोरेंट की फोटो सामने दिखाई दे रही है और इस रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर ऐंठे लिखा हुआ है और इस रेस्टोरेंट के गेट का कलर ब्राउन कलर से किया गया है।

यह एक मॉल का फोटो है जोकी बिहार मुज्जफरपुर में स्थित है जिसका नाम पी.एन.एम. मॉल है और इस मॉल में सभी तरह की ब्रांडेड शॉप आपको मिल जाएगी और सभी तरह के लोग यहाँ पर आकर के घूम सकते हैं।